यह एक लड़की बनी खड़ी हुई है डमी में लड़की के सिर पे बाल लगे हुए हैं लड़की एक फ्रॉक --

पर्दो की दुकान हैं अलग-अलग प्रकार के और अलग-अलग कलर के पर्दे लगे हुए हैं काफी सारे --

ग्राउन्ड मे राइट साइड मे बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे भी लग रहे है पेड़ पौधे बहुत बड़े-बड़े है ग्राउन्ड मे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि खेल रहे है।